दीवाल पर एक बोर्ड लगा हुआ है।

यहां सामने एक लकड़ी की मेज है उसपर दो लैपटॉप रख रखें हुए हैं।

यह एक बस स्टैंड है यहां पर दो बसे खड़ी हुई है।

और काफी सारे डब्बे नीचे रखे हुए पेंट के--